दो लड़के हैं जो बच्चे को अच्छे से संभालते है ताकि बच्चे इधर-उधर ना भटक जाए।

यहाँ पे बोहोत ही अच्छे से बच्चो का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे बोहोत ही अच्छे झूला आये है और यहाँ पे घुमने के लिए भी एक नंबर जगह है। आराम से यहाँ पे घूम भी सक --

देख सकते है ये एक डेकोरेशन किया गया है जो की बोहोत ही शानदार लग रहा है देखने में ये सिर्फ फूल से काम किया गया है।

इसके जस्ट बगल में पहाडी है। इसके चारो पट्टी पहाड़ी है ये पहाड़ के ऊपर का सीन है।

कल यहाँ पे एक माँ तारा ट्रेडर्स । यहाँ पे कोई भी सामान ले सकते हैं। यहाँ पे सजाया गया है। ये नया-नया खुला है।

जूते-उते पहन के आए हैं चश्मे उशमे लगा के आए हैं।

जहां की बहुत ही अच्छे से सजाए गए है। ऊपर में बैलून वलून से अच्छे सजाए गए है।

आपको आराम से आइये यहाँ पे काम करा सकते हैं यहाँ पे खाता भी खुलवा सकते हैं आप यहाँ खाता खुलवाइए बहुत ही आप --

ये रात में इसे चार्ज दिए जाता है और सवेरे इसे चलाया जाता है ये इलेक्ट्र --

ए उसके बगल में एक रोड है। एक बस्ती है वो।

यहाँ पे देखा जा रहा है यहाँ पे अभी रोड बन रहा है यहाँ पे बहुत से आदमी को लगाया है काम पे बहुत काम यहाँ पे जारी है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बनाया जा रहा है यहाँ पे।

यहाँ पे दो बैले है। बहुत स बहुत से लोग रहते है यहाँ पे।

और यहाँ पे सभी गाड़ियाँ सर्विसिंग की --

सभी अपने डिसिप्लिन में बैठे है सर समझा रहे --